यहां शीशों के पीछे बोहोत सामान रखा हुआ है। आगे स्टूल रखे है।

पीछे पेड़ है बोहत सारे घर बने हुए है बिजली के बड़े-बड़े खंभे हैं।

बड़ा एक बैनर लगा हुआ है।

पैंपर्स के पैकेट टंगे हुए हैं आगे दुकान में सामान रखा हुआ है आगे एक आदमी खड़ा हुआ है ऊपर टिन है।

बड़ी जुलुस निकल रहा है रोड पर मूर्ति लोग पीले कपड़ों मे खड़े हैं पीछे एक दो बिल्डिंग है बगल में पेड़ है।

साइकिले खड़ी है दो बाइके है दीवार है पीछे बहोत सारे पेड़ है आगे नीचे मिट्टी पड़ी है पत्ते पड़े है।

बहुत सारी शर्ट टंगी है ऊपर लाइट है हैंगर पे शर्ट टंगी है।